नीचे पूरी घाँस बिछी हुई है लाइन --

और दो टॉवर दिखाई दे रहे है बड़े -बड़े इसके में लाइटिंग की पूरी वायरिंग हैं ।

और ऍपल का बॉक्स दिखाई दे रहा है उपर में--

और हरा और वाइट में --

एक लाइटिंग दिखाई दे रहा है नीचे जमीन में जिसमें तीन लाइट लगी हुई हैं ।

उसमें वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ हैं ।

जिस पंडाल में कपड़ा लगा हुआ हैं ।